सामने मे एक स्कूल नजर आ रही है।

और लाल कारपेट बिछा हुआ नजर आ रहा है।

बिल्डिंग नजर आ रही है जिसकी छत लाल रंग की है और आजु बाजू मे बहोत ही ज्यादा हरियाली छाई हुई है।

एक दुकान नजर आ रही है दुकान के साइड में एक बहुत ही बड़ा पोस्टर लगा हुआ है उसमें लिखा है ठाकरे ट्रेडर्स ।

यह एक जिम है जिम में कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे है।